और यहां पर ढेर सारी चीज भी बनाए हुए हैं।

जो पूरी तरह व्हाइट कलर में है।

पीछे में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

फूलों वाली टेबल और यहां पे एक और वाइट कलर टेबल पर रखी हुई हैं और आसपास में ढेर सारे कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

हर एक बुक का कलर अलग अलग रखा हुआ है।

कॉपी किताब की शॉप दिखाई दे रही है।

छोटे छोटे पत्ते नजर आ रहे हैं।

यहाँ पहाड़ के पास काली काली थोड़ी सी परत बन बनी हुई नजर आ रही है।

ऊपर में कुछ और दिख रहा है।

इंजीनियरिंग वर्क लिखा हुआ नजर आ रहा है जो रेड कलर में है और नीचे में बहोत सारी चीज़ लिखी हुई नजर आ रही है जो काफी छोटी दिख रही है।

दुकान के बाहर नजर आ रहे हैं।

एक इंसान नजर आ रहा है जो कुछ बेचते हुए दिखाई दे रहा है।

पीछे में कुछ लिखा हुआ है लुइस करके कुछ।

इस तस्वीर मे हमें ढेर सारे कबर्ड दिखाई दे रहे हैं जो पूरी तरह व्हाइट कलर में है।

वाश बेसिन भी काफी सारे रखे हुए हैं।

यहां पे एक बल्टी का शेप में भी कुछ बनाया हुआ है छोटे छोटे नाद भी यहां पे रखे हुए हैं।

एक कुलर टूटा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे एक मिरर भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे में रेड पर्दे में ढेर सारी कुर्सी भी--

लगाई हुई है लाइन से।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा ब्रिज नजर आ रहा है।

ऊपर में हमें बादल भी नजर आ रहे हैं।

और दूर में हमें पहाड़ जैसा कुछ दिख रहा है।

इस कार की सर्विसिंग हो रही है।

रिक्शा का कलर रेड और येलो --

यहां पे एक खिड़की भी लगाई हुई है जो ब्राउन कलर की दिख रही है।

आसपास छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहे हैं।

पार्क का दृश्य नजर आ रहा है।

यहां पे एक बहोत बड़ा बरगद का पेड़ भी दिख रहा है।

कुछ बच्चे खड़े हैं तो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।